नीले रंग का टब रखा है।

बहुत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

नीचे भी कुछ खिड़की हैं।

एक टायर जमीन पर पड़ा है।

दूर की तरफ एक आदमी बैठा हुआ है।

और बहोत सारे पेन पेंसिल रखे हुए हैं।

यह एक शुभम नर्सरी है।

इसके साइड में सफेद टेंट दिख रहा है।

जिसकी सड़क पर टाइल्स लगे हैं।

कुछ दूर पर कुछ घर नजर आ रहे हैं।

इसमें आकांक्षा हॉस्पिटल दिख रहा है।

एक पक्की सड़क दिख रही है।

जिसमें कुछ आदमी नजर आ रहे हैं।

बहुत सारी तारें दिख रही हैं।

कुछ दुकान और एक आदमी नजर आ रहा है।

साइड में कुछ टॉय के बॉक्स रखे हुए हैं।

बहोत सारे गद्दे नीचे बिछे हुए हैं।

दो बाइक खड़ी हैं।

इसकी दीवारें कच्ची नजर आ रही है।

सफेद कलर का टेंट --

घास फूस पड़ी हुई है।

दूर से नीला आसमान दिख रहा है।

काउंटर पर एक आदमी बैठा है।

एक लड़का बैठा हुआ है।

ये एक पक्की सड़क है।

चांदी के कटोरे नजर आ रहे हैं।

हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।